मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा लेग दिखाई दे रहा है।

डोरमेट भी है पर्दा भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारे इंसान दिख रहा है।

बहोत जा रहा है बस के पीछे--

नीचे मे चक्का भी दिखाई दे रहा है।

नीचे में ग्रीन कलर का कारपेट बिछा के है लाइट्स भी जल के है।

नीचे में टाइल्स भी बिछा के है। टेबल के ऊपर टूथ पिक ट्रे और कैलकुलेटर भी है।

अंदर में टेबल भी दिखाई दे रहा है।

लोहा से बना हुआ गेट भी दिख रहा है।